और बाइक भी लगा हुआ है और साइकिल भी है ये रोड अलकतरा का बना हुआ है और नीचे ब्रिज भी है और गाछ-वृछ भी लगा हुआ है पोल भी है ये क्या और साइकिल भी लगा हुआ --

फूल का दूकान है बहुत सारा फूल है बहुत सारा लोग है। एक बुढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ है फूल के दूकान के पास। एक व्यक्ति झोला लेके खड़ा है और एक आदमी---

कार का नंबर प्लेट भी है अररिया नंबर ।

आगे में बहुत सारे आदमी भी है। चारो साइड पंडाल लगा हुआ है बांस का पंडाल है। बहुत सारे अच्छे लोग लोग भी हैं।

आइना भी है बू टाई भी लगाया हुआ है कपड़ा पहना हुआ है बहुत सारे लोग भी पीछे खड़े है दीवाल भी है।

एक आदमी पानी पी रहा रहा है प और उनके अगल-बगल में पेड़ है पहाड़ है पहाड़ को कलर किया हुआ है। बहुत सारे पत्थर भी फेके हुए हैं।

एक आदमी भी खड़ा है। तो बीना चप्पल के खड़ा है। इनके अगल-बगल में बहुत सारे पेड़ हैं ग्रीन कलर के पत्ते भी हैं।

दू आदमी बैलून के सामने खड़ा है। और फूल ऊपर में सजावट किया हुआ है फूल का स्टार बना हुआ कुछ सामान भी है।